और दीवालों पर भगवानों का पोस्टर भी लगा हुआ है।

और उसके नीचे बहोत सारे ए.सी. वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं।

और अगल-बगल बहुत सारे लोग खड़े होके उसे देख रहें हैं और अपने कैमरा में कैप्चर भी कर रहें हैं।

और यहाँ पर दो बैनरे भी लगी हुई है जिसमे मम्मी डैडी लिखा हुआ है।

और गेट के ऊपर एक और बैनर भी लगा हुआ है जिसमें ऊपर एस.टी. मेरी स्कूल लिखा हुआ है।